घास भी उगे हुए हैं छोटे-छोटे हरे-भरे पेड़-पौधे लगे पूरा बाउंड्री से घेरा हुआ है पेड़-पौधे अलग-बगल में भी लगे हुए हैं।

ये एक बहुत बड़ा घर है ये देखने मे बहुत खुबसूरत लग रहा है ये ग्रीन कलर से पैंट किया है इसमें बहुत सारी खिड़कियाँ हैं एक बॉल लगा हुआ है नीचे में एक मेन गेट है।